बड़ा सा पानी का तालाब दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के गेट पे ब ढेर सारी मोटरसइकिलियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

लाइटें लाल लाल जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

लाल कलर का पाइप दिखाई दे रहा है।

मैदान के अंदर ढेर सारी औरते दिखाई दे रही हैं।

मंदिर के अंदर ढेर सारे आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

बड़ा सा डामर रोड दिखाई दे रहा है।

दामर रोड के ऊपर टू व्हीलर गाड़ी दिखाई दे रही हैं।

ये हमें सफेद रिंग है गाड़ी के पीछे दरवाजा है।

कुछ पेड़ बड़े हैं कुछ छोटे पेड़ हैं।

सामने बड़ा सा ऑफिस दिखाई दे रहा है।

मार्केट है मा दुकाने के ऊपर बोर्ड लगे हुए है।

उसके सामने दो कुर्सी चॉकलेट कलर की रखी हुई हैं।

कुर्सियों के ऊपर ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं।

सारे पेड़ बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं।

मैदान के सामने बड़ा सा गेट देखाई दे रहा है।

मंदिर के अंदर घंटा लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

मूरत के पीछे दीवाल पे एक गैस सिलेंडर टंगा हुआ है उस--

बड़ा सा फल की दुकान दिखाई दे रही है।

ढेर सारे नारियल पानी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ढेर सारे अंगूर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ब्रिज के नीचे हाईवे रोड दिखाई दे रहा है।

बैरियर पे लिखा है सहायता पुलिस ।

रेस्टोरेंट के अंदर ढेर सारी कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।